आस-पास बहोत सारे खेत है एक घर है यहाँ पर बहोत बड़े-बड़े--

पास में बहोत सारे बड़े-बड़े--

ये एक शोरूम है इस शोरूम में बहुत सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पर दो जीप रखी हुई है एक जीप नीले रंग की है एक जीप --